जैसा कि हम देख पा रहे है ये रोड के साइड का एरिया है रोड का एरिया है जो बाइक अ बाइक --

यहां एक रेड एंड ब्लू कलर का ड्रेस पहनी हुई एक लेडी हैं इसके ठीक ऑपोज़िट जैंट्स हैं जो व्हाइट और --

नीचे एक रेड रंग का कुछ बिछा कर मछली बेचा जा रहा और येलो का रंग का टॉप में भी मछली रखे है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये रोड़ साइड का इलाका है ।

ये सतेनरी सामान उचित मूल्य में मिलते है । जो स --

बहुत ही अच्छा ये क्राउडेड प्लेस है दो बाइक खड़ी हैं बगल में दो पर्सन्स भी खड़े हैं जो उसी की ओर देख रहे हैं एक --

चिप्स एंड कुरकुरे आइस क्रीम का भी डिशेज रखा हुआ है मिठाई भी कई प्रकार के है काफी अच्छे और डिलिशियस --

ये एक लरजरी बस दिख रही है जो ब्लू --